कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं सामने छत पे सरिया लगी हुई दिख रही हैं।

बच्ची ने ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जींस पहन रखी है।

इसमें एक पंखा लगा हुआ है और दूसरी साइड एक ट्यूबलाइट जल रही है।

यह किसी मेट्रो स्टेशन का चित्र है जहां पर सामने पटरी नजर आ रही है ऊपर प्लेटफार्म बना हुआ है।

जिसमें दो पीतल के लोटे नजर आ रहे हैं और एक स्टील का लोटा है।

यह एक पार्क की तस्वीर है जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है।

येलो कलर क का पर्दा लगा हुआ है और उसका जो अह में मे मेज है वो ब्राउन कलर में है।

तीन लोग बैठे हुए हैं जिसमें से दो लोगों के चेहरे ब्लर किए गए हुए हैं।